और फायर भी यूज हो रही है इसमे सैंड भी है साइडस में इनके सामान भी है।

ये है मजदूर जो कि काम कर रहे है कंस्ट्रक्शन का।

यहां पर पूजा हो रही हैं जहां के लेडिस पानी में पूजा कर रहे हैं।

वगैरा पार्क करके रखे हैं।

शॉपिंग मॉल है जहां पर लेडिस के ड्रेसेज़ हैं।